सामने एक झंडा भी नजर आ रहा है।

यह एक बड़े से घर के बाहर का दृश्य है जिसमें काफी सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

पीछे के बिल्डिंग में काफी सारे बांस लगाए हुए हैं।

पीछे की साइड में काफी सारा पेड़ नजर आ रहा है।

दीवार का कलर व्हाइट है और उसमें एक बल्ब लगाया गया है।

रैको पे काफी सारे सामान रखा गया है।

और बाकी सब स्टेडियम पर बैठे नजर आ रहे हैं।

पीछे की साइड में एक सीड़ी भी नजर आ रही है।

साइड में पर्दा नजर आ रहा है।

यह एक रोड का दृश्य है जिसमें तीन व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

यह एक पार्क का दृश्य है जिसमें लकड़ी के काफी सारे रेलिंग लगाई नजर आ रही है।

एक छोटा सा गेट भी नजर आ रहा है।

बगल में काफी सारे पानी के बोतल भी रखे गए हैं और लोहे के ड्राम भी रखे गए हैं।

यह एक मूर्ति दुकान का दृश्य है जिसमें ऊपर की छत पे काफी सारे लाइटे लगाए गए हैं।

नीचे की जमीन पर टाइल्स लगाया गया है।

उनके हाथ में एक क्राफ्ट नजर आ रहा है जिसमें चार पहाड़ और चार घर नजर आ रहे हैं।

रैको पे भी काफी सारे सामान रखे गए हैं।

अंडर की साइड में दो व्यक्ति नजर आ रहे हैं।